दोस्तों bash में conditional execution के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
* test command का प्रयोग
और conditional statements
हम यह कुछ उदाहरण प्रयोग करके करेंगे
इस tutorial के अनुसरण के लिए
आपको gnu/लिनक्स operating system से परिचित होना चाहिए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
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
* ubuntu लिनक्स 1204 os
और * gnu bash version 4110
अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है
अब test के परिचय के साथ शुरू करते हैं
* test एक अन्तर्निहित command है जो exit status को returns करता है
* यह true के लिए zero और false के लिए one returns करता है
* return value expression के मूल्यांकन पर निर्भर करती है
* आप dollar और question mark $ टाइप करके return status प्राप्त कर सकते हैं
* एक expression का दो तरीकों से मूल्यांकन किया जा सकता है
#पहला कीवर्ड test प्रयोग करके
और दूसरा expression को square brackets में लिखकर प्रयोग करके
अब एकसाथ ctrl alt और t कीज़ दबाकर terminal खोलें
type करें: test space 4 space hyphen eq space 4 semicolon space echo space dollar साइन और question mark enter दबाएं
यह zero returns करता है जिसका मतलब true है
4 इस 4 के बराबर है
आगे type करें:
square bracket खोलें space 4 space hyphen eq space 4 space square bracket बंद करें semicolon space echo space dollar साइन और question mark enter दबाएं
यह zero returns करता है जिसका मतलब true है
यानी 4 4 के बराबर है
अब एक अन्य expression let हैं type करें:
यह one returns करता है जिसका मतलब है false
यानी 4 5 के बराबर नहीं है
अब square brackets में समान expression लिखते हैं type करें:
square bracket खोलें space 4 space hyphen eq space 5 space square bracket बंद करें semicolon space echo space dollar साइन question mark enter दबाएं
यह भी one returns करता है जिसका मतलब है false
यानी 4 5 के बराबर नहीं है
यह अन्य प्रकार से जाँचने के लिए विस्तारित किया जा सकता है
कृपया type करें man space test और इसके उपयोग को जाँचें
अब अपनी slide पर वापस आते हैं
अब हम if statement के लिए रचनाक्रम देखेंगे
if space square bracket खोलें space expression space square bracket बंद करें semicolon space then
अगली line में type करें commands या statements जो आप निष्पादित करना चाहते हैं
अंततः if loop को fi ऍफ़ आइ से अंत करें
condition के बुनियादी नियम हैं:
brackets और expression के बीच spaces हमेशा रखें
हमेशा कीवर्ड then से पहले semicolon प्रयोग करके line को अंत करें
semicolon statement या expression को ख़त्म करने के लिए प्रयोग होता है
यह सलाह दी जाती है कि string variables को quote करें अगर आप उन्हें कंडीशंस में प्रयोग करते हैं
conditional block को fi के साथ बंद करना न भूलें
अब if statement पर एक उदाहरण देखते हैं
terminal पर वापस आते हैं
मैं simpleif sh named पहले से मौजूद script फाइल खोलूंगी
यह bash script message दिखाती है count 100 है जब count equals to 100 है
यह bash shell script की पहली line है जो शीबैंग line कहलाती है
integer 100 variable count को नियुक्त किया जाता है
ध्यान दें कि count इक्वल्स टू और 100 के बीच कोई space नहीं होना चाहिए
यह expression जाँचता है कि क्या count 100 के बराबर है
यहां हाइफन eq comparison operator है
अगर condition true है तो यह message दिखायेगा count is 100
fi if block का अंत है
ctrl + s दबाकर file सेव करें
terminal पर वापस जाते हैं
file को निष्पादन योग्य बनाने के लिए type करें: chmod space plus x space simpleif sh और enter दबाएं
अब मैं prompt clear करती हूँ
अब type करें dot slash simpleif sh enter दबाएं
यहाँ यह प्रदर्शित होता है:
count is 100
variable count की value को बदलने की कोशिश करें और script निष्पादित करें
slides पर वापस जाते हैं
हम ifelse condition देखेंगे
सामान्य रचनाक्रम है: if space square bracket खोलें space condition space square bracket बंद करें space semicolon space then
अगली line में type करें commands
अगली line में else statement है
और फिर से type करें some other commands
अगली line में type करें fi i block का अंत करने के लिए
अब एक मनोरंजक password program के साथ ifelse के उपयोग का अध्ययन करते हैं
terminal पर वापस आते हैं
मैं ifelse sh फाइल खोलूंगी
यह शीबैंग line है
यहाँ abc123 को variable pass में संचित किया गया है
क्योंकि abc123 एक string है इसको doublequotes में लिखा जाना चाहिए
read command मानक input से data की एक line पढ़ता है
इस स्थिति में मानक input हमारा keyboard है
hyphen s silent mode के लिए है
जिसका मतलब है कि type करते समय प्रविष्ट किया जा रहा password नहीं दिखेगा
हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारा password देखें
hyphen p prompt के लिए है
यह यूज़र से input लेने से पहले ही एक string enter password: दिखायेगा
mypassword एक variable है
यह string संचित करता है इस स्थिति में password यूज़र के द्वारा प्रविष्ट होता है
यह जाँचता है कि प्रविष्ट password variable pass की value से मेल खाता है
यह variable mypassword में संचित होता है
अगर password मेल खाता है तो यह एक message दिखाता है
password accepted
नहीं तो यह दिखायेगा access denied
fi ifelse loop का अंत है
ctrl s दबाकर file को सेव करें
अपने terminal पर वापस आते हैं file को निष्पादन योग्य बनाने के लिए type करें:
type करें dot slash ifelse sh enter दबाएं
यहाँ यह प्रदर्शित होता है:
enter password:
मैं abc टाइप करुँगी एंटर दबाएं
जैसे ही गलत password प्रविष्ट होता है यह message दिखाता है access denied
दोबारा निष्पादन करते हैं लेकिन इस बार हम password प्रविष्ट करेंगे abc123
password accepted प्रदर्शित होता है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
अपनी slides पर वापस आते हैं और सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा test command का उपयोग सरल if statement और if else statement
एक नियत कार्य में
#एक script लिखें input में अपना name लें
#इसे इस name को आपके system के यूज़रनेम के साथ जाँचना चाहिए
अगर यूज़रनेम मेल खाता है तो इसे hello दिखाकर अभिवादन करना चाहिए
#नहीं तो इसे try again दिखाना चाहिए
hint: आपके system का यूज़रनेम variable $user में संचित किया जाता है
नीचे दिए link पर उपलब्ध video देखें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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद